यह तस्वीर एच_डी_एफ_सी बैंक के आगे की नजर आ रही है वह यहां पर ये सर्दियों का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइज की तस्वीरें बोर्ड पर नज़र आ रही हैं।

यह तस्वीर एक जोकर की नजर आ रही है यहां पर इस आदमी ने हरे रंग के मोजे पहने हुए हैं।

यहां पर एक औरत की चोटी दिखाई दे रही है यहां पर--

वे चारों तरफ हरे भरे नारियल के पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

वे नीचे हरे रंग का मैट दिखाई दे रहा है पीछे पीले रंग के पर्दे भी नजर आ रहे हैं।

पीछे से एक ट्रक भी आ रहा है यहां पर बिजली के खंभे भी नजर आ रहे हैं।

ऊपर लटकाने के लिए रंग बिरंगी झूमर भी नजर आ रही हैं।

यहां पर बिल्डिंग पुरानी नजर आ रही है पीछे कुछ हरी झाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं व यहां पर एक अह --

ये डब्बे सफेद रंग के हैं।

जहां पर एक कपल साथ में गेट पर खड़ा है।

हात में भारतीय झंडा नजर आ रहा है।

दीवार नज़र आ रहा है व पीले रंग की लाइटनिंग दिखाई दे रही है।

यह तस्वीर एक बिल्डिंग के बाहर की है।

स्टडी टेबल खुला नजर आ रहा है व पीछे डब्बे में भार भारतीय नक्शा दिखाई दे रहा है।

वे कांच के शीशे नजर आ रहे हैं।

यह तस्वीर में आलू नजर आ रहे हैं।

व यह एक टोकरी में दिखाई दे रहे हैं।

यह तस्वीर एक एयरपोर्ट की नजर आ रही है।

जहां पर एक्वाफ्रेश के डब्बों में पैक आर_ओ दिखाई दे रहे हैं।